सड़क के किनारे पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है एक साइकिल रखी हुई दिखाई दे रही हैदीवार पर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ दिखायी दे रहा है।

लगी हुई दिखाई दे रही मैदान में हल्कि-हल्कि घास दिखाई दे रही है।

दुकान में एक बड़ी सी खिड़की दिखाई दे रही है दुकान के बाहर बहुत सारी मोटरसाइकिल रखी हुई है दुकान के अंदर कुछ बोर्ड दिखाई दे रहे हैं।